इस तस्वीर में मुझे समुद्र दिखाई दे रहा है इसमें पानी में लहरें उठ रही है आस-पास बोहोत ही घना जंगल है।